इस दृश्य मे हमे एक रूम नज़र आ रहा है।

शायद यह बाइक रिपेयर हो रही है।

इस दृश्य में हमें एक सड़क नजर आ रही है।

इस दृश्य में हमें एक कमरा नजर आ रहा है।

रही है हमें और भी वीकल्स दिख रही है।

देखने से यह तस्वीर हमें फूल की लग रही है।

यह शायद में कोई डेंटल हॉस्पिटल है।

सफेद रंग का मेज पड़ा हुआ नज़र --

देखने से यह दृश्य हमें किसी--

देखने से यह तस्वीर हमें किसी--

उसने माथे पर टीका भी लगाया हुआ है।